और उस बगल एक नल भी लगा हुआ है।

और दीवार पे दो ऐ_सी भी लगे हुए हैं।

जिसके सामने व्हाइट कलर का टेबल रखा हुआ है जिसपे कपड़ा दिखाया जाता है।

और इसके अंदर फर्श लगा हुआ है।

इस रेस्टोरेंट के ऊपर एक बोर्ड है बोर्ड पर ओपन ऐअर रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

एक व्यक्ति व्हाइट कलर का टी शर्ट पहने हुआ है और फर्श पर ग्रीन कलर का मैट बिछा हुआ है।

इस तस्वीर में एक मेट्रो स्टेशन बना हुआ है।

और कई सारे पौधे पीछे लगे हुए हैं।